सामने कांच का गेट लगा हुआ है आस पास स्टील की बाउंड्री है।

सामने एक कंप्यूटर रखा है जो व्यक्ति चला आ रहा है कंप्यूटर के पीछे एक व्यक्ति और बैठा हुआ है।

सामने एक लोहे की जाली है अंदर की ओर एक मिठू है जो नीला और पीला कलर का है।

अंदर और भी बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं जाली के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

वापस एक व्यक्ति भी है। ऊपर की ओर सीडियां है किनारे--

अंदर की ओर बहोत सारे झूले हैं बहोत सारे बड़ी बड़ी फसल पट्टियां है गोल गोल नीली कलर की--

चारों ओर बहोत बड़े बड़े लाइट जल रही है बहोत सारी खिड़कियां है।

चारों ओर अंधेरा है और भी बहुत सामान है।

बहुत सारी खिड़कियां हैं जो काली कलर की है काले कलर के दरवाजे हैं आसपास पौधे हैं।

बहोत सारे व्यक्ति एकत्रित है कुछ फोटो ले रहे है।

मैदान में छोटी छोटी घास उगी हुई है।

सामने बहोत सारी अलमारी है जो कांच की बनी हुई है कुछ लोहे की अलमारी है उसमें बहोत सारा सामान रखा हुआ है कुछ सामान कागज के डब्बों के अंदर है।